सामने एक बहोत बड़ा तालाब है जो की डैम की समान दिखाई दे रहा है ।

साथ ही इसमे बहोत सारी लगी हुई है | जिसका गोल चक्कर बना हुआ है साथ ही एक हरी और सफेद कलर की है एक गुलाबी कलर की है एक ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है ।

बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए है । यह ट्रेन ऑरेंज कलर की है और साथ खंबे लगे हैं ।

यह सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमे कई प्रकार के भगवान की मूर्ति रखी हुई है।

सामने एक छोटा-सा पार्क दिखाई दे रहा है जो कि छत के समान पक्के के ऊपर घास को उगाया गया है| सामने दो पेड़ दिखाई दे रहे है हरे-हरे --

तो कोई नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं । इसमें से कुछ हरी तो कुछ पत्थर कलर की मूर्ति दे रही है साथ ही ऊपर सीलिंग लगी हुई है ।

सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे सूखी घास लगी हुई है साथ ही यहाँ दो हिरण दिखाई दे रही है जो की सामने की और देख रही है ।